स्ट्रिंग फंक्शंस ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में आपका स्वागत है
स्ट्रिंग रिवर्स के साथ शुरू करके हम अन्य फंक्शंस को देखेंगे
स्ट्रिंग रिवर्स संभवतः strrev है
तो strrev क्या करता है कि यह स्ट्रिंग के कंटेंट्स को रिवर्स करता है
यदि हम लिखते हैं और हमें उसे रिवर्स करना है तो यह olleh होगा
यह कुछ जगह पर उपयोगी हो सकता है लेकिन आप ज़्यादातर इसका उपयोग नहीं करेंगे
लेकिन आप इस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं यदि विशेष रूप से किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है
मुझे लगता है यह फंक्शन उपयोगी है
ठीक है– तो अगले फंक्शन्स जो हमने समूहीकृत किए हैं वह हैं: str to lower और str to upper
इसका मतलब है लोअर केस के लिए स्ट्रिंग और अपर केस के लिए स्ट्रिंग
तो यदि हमारे पास स्ट्रिंग hello है मैं कह सकता हूँ echo str to lower और यहाँ स्ट्रिंग की वेल्यू दिखाएँ
the hello जो बड़े अक्षरों में है वह लोअरकेस में हो जाएगा
ऐसा ही कुछ होगा अगर यह hello लोअरकेस में है
और मैं कह सकता हूँ str to upper और मुझे स्ट्रिंग का अपर केस वर्ज़न देगा
अब इसका एक मुख्य उपयोग है जब आपको उपयोगकर्ता का पंजीकरण यानि रजिस्ट्रेशन करना होता है
यदि आपके पास वेबसाइट है जिसमें उपयोगकर्ता को रजिस्टर करना होता है तो आपको यूज़र नेम हमेशा लोअर स्ट्रिंग के रूप में संचित करना चाहिए
इसका कारण यह है यदि मैं एक यूज़रनेम जमा करता हूँ – इसको हटाते हैं
कुछ लोग वास्तव में इसे करते हैंएक वेरिएबल यूज़रनेम लिखते हैं alex
और मैं यह भी लिखूंगा– अपरकेस और लोअरकेस अक्षर
कुछ लोग इस तरह के नाम का उपयोग करते हैं ताकि यह रोचक लगे और यह ठीक है
लेकिन नाम इस तरह से संचित है और आप सोचते हैं – क्या मैंने छोटे अक्षर a से शुरुआत की थी
फिर अब मेरे पास यूज़रनेम के लिए अलग स्वरुप है
तो आप यह लिख सकते हैं कि stored user name equals to str to lower of username
अतः यह डेटाबेस में संचित यूज़रनेम होगा
अब जब वे लॉगिन पर जाते हैं और इस संयोजन में अपने यूज़रनेम टाइप करते हैं हम क्या कर सकते हैं कि हम उनके टाइप किए हुए यूज़रनेम को लोअरकेस में बदल सकते हैं और उसकी तुलना यूज़रनेम के लोअरकेस वर्ज़न से कर सकते हैं
अतः हम यह ले रहे हैं और डेटाबेस के भीतर लोअरकेस वेल्यू संचित करते हैं और उसकी तुलना टाइप की हुई वेल्यू के साथ करते हैं जोकि लोअरकेस में भी बदली गई हैं
अतः हम गलत नहीं जा सकते तथा उपयोगकर्ता अपने यूज़रनेम नहीं भूलेंगे
आप ऐसा ही पासवर्ड के साथ कर सकते हैं
ठीक है चलिए अगले वाले पर चलते हैं
सबस्ट्रिंग काउंट यह मूलतः सबस्ट्रिंग की संख्या की गिनती करता है जोकि स्ट्रिंग के भीतर किसी एक वेल्यू से मैच करती है
अतः यहाँ मैं टाइप करूँगा search equals my name is alex what is your name
अतः यह हमारी स्ट्रिंग है
अब यदि हमें substring count एको करना है
और जाहिर है यह substringcount के लिए है हमें क्या करना है कि हम अपनी search स्ट्रिंग खोजना चाहते हैं
और हम स्पष्ट करेंगे कि कौनसी स्ट्रिंग खोजनी है अब यदि हम इसे रिज़ल्ट नामक वेरिएबल में रखते हैं तो यह पूर्णांक देगा
यह इसलिए क्योंकि आपको किसी भी शब्द का उदाहरण नहीं मिलेगा जोकि 12 बार मौजूद हो
साथ ही result वेरिएबल two के रूप में 2 वापस नहीं करेगायह 2 को पूर्णांक के रूप में देगा
अतः यह काफी उपयोगी है यदि हम सबस्ट्रिंग काउंट मानिए कि alex के लिए उपयोग कर रहे हैं
और फिर यह स्वतः एको होगा
और यदि आप यहाँ देखेंगे तो पाएँगे कि यहाँ alex का केवल एक उदाहरण है
तो उसे रिफ्रेश करें और हमें संख्या 1 मिलनी चाहिए
अब जब हमें name के लिए खोजना है– यहाँ name के लिए एक उदाहरण है और यहाँ दूसरा उदाहरण
अतः जब हम रिफ्रेश करते हैं हमें 2 वेल्यू मिलनी चाहिए
अब इसके लिए वैकल्पिक पैरामीटर है जो है कि एक स्ट्रिंग में कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ पर अंत
चलिए इसकी कोशिश करते हैं
मानिए कि मुझे name के बाद से खोजना है ठीक है
अतः यह है 0 1 2 3 4 5 6
तो मैं कहता हूँ 7 के बाद से name खोजें
अतः 7 के बाद से name खोजें और यह इस नीले भाग में खोजेगा जिसे मैंने चिन्हांकित किया है
यह result में सिर्फ 1 वापस करेगा
अतः आप स्ट्रिंग में जगह निर्दिष्ट कर सकते हैं
आप कहाँ तक इसे निर्दिष्ट कर सकते हैं
यह है 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 से 17 तक चलिए देखते हैं कि यह काम करता है या नहीं
यह शून्य बताता है अतः 7 से 17 तक जोकि यहाँ से यहाँ तक है – हमें name कोई भी उदाहरण नहीं मिले
जब हम alex के लिए खोजते हैं हमें उसके लिए एक उदाहरण मिलता है
अच्छा – तो यह सबस्ट्रिंग काउंट फंक्शन है
और अब substring replace उसी के समान है
यह वही फंक्शन नहीं है लेकिन इसमें एक अधिक फायदा है कि आप स्ट्रिंग को बदल सकते हैं
अतः रिप्लेस टैग्स हैं my name is alexऔर मैंने पूर्णविराम जानबूझकर डाला है
हमारा result substring replace के बराबर है
मुझे क्या रिप्लेस करना है यानि क्या बदलना है मुझे variable replace को रिप्लेस करना है
और मुझे alex को billy में बदलना है
और यह होगा – मैं गिनता हूँ 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 अतः 11 से
यह 11 है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 से 14 तक
अतः alex को billy में बदल जाना चाहिए
रिप्लेस करें और रिफ्रेश करें
ओह ! हमने रिज़ल्ट एको नहीं किया है
चलिए रिज़ल्ट एको करते हैं और हम इसे रिफ्रेश कर सकते हैं
और इसे my name is billy वापस करना चाहिए
मुझे लगता है यह 12 और यह 15 होना चाहिए
वास्तव में यह 10 और 14 होने चाहिए
नहीं यह सही नहीं है हमने पूर्णविराम नहीं डाला है
अतः 11 और 14 लिखते हैं
अभी भी पूर्णविराम नहीं है मुझे नहीं पता क्यों
hmm! अब आपको पता चलता है
वास्तव में स्ट्रिंग में आप कुछ भी बदल सकते हैं एक शुरुआती वेल्यू और एक अंत की वेल्यू के साथ
यह काउंट करने के लिए आप पर छोड़ेगा
मैं काफी थका हुआ हूँ इसलिए काउंट नहीं कर पाउँगा
अतः हम यह करने जा रहे हैं कि एक विशेष स्ट्रिंग को एक विशेष वेल्यू से बदल रहे हैं
और यहाँ आपकी शुरुआती वेल्यू है और यहाँ अंत कि वेल्यू
इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही
कई सारे स्ट्रिंग फंक्शंस है और मैं सलाह दूँगा कि google पर आप खोजें
php string functions के लिए खोजें और आपको कई सारे रोचक फंक्शंस मिलेंगे
यदि आप किसी विशेष चीज़ के लिए ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है कि उसके लिए एक फंक्शन मौजूद हो
देखने के लिए धन्यवादयह स्क्रिप्ट सकीना शेख द्वारा अनुवादित है तथा आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद